यहां पे ग्राउंड पे हमें हरा भरा दिख रहा है घासें दिख रही है।

यहां पे हमे एक बोर्ड दिख रहा है उसका नाम है मिश्लिन--

उनके हाथों में कुछ है और लोगों ने कुछ ने लाल रे ब्लू व्हाइट जैसे टी_शर्ट कपड़े पहने हुए है।

वो ब्लू कलर का बोर्ड है यह कोई एकेडमी चलती है।

यहां पे एक व्यक्ति लाल टी शर्ट में काम कर रहा है।

इस बगीचे में एक गाड़ी खड़ी है जो टैक्सी जिस पे नंबर प्लेट टैक्सी का है।

उधर एक आदमी भी दिख रहा है और शायद ये रेस्टोरेंट है।

यह चित्र एक सुपर स्टोर या मॉल का दिख रहा है।

और बहोत से खाने की चीजे पड़ी हुई है और एक लाल कलर की टोकरी के अंदर कांधा भी पड़ा हुआ है।

तीन चार बिल्डिंग लगी है यहां पे और हमें इलेक्ट्रिक खंबा दिख रहा है यहां पे बहोत से वायर हैं।

यहां पे हमें दुकान दिखाई दे रही है राजस्थान स्वीट्स और नमकीन की।

एक आदमी जो नमकीन लेने आया है अंदर हमे वो दिखाई दे रहा है।

और हमें बहुत सारे यहां पे खाने की दुकान दिखाई दे रही है।

और लोग राइड करते हुए हमें दिख रहे हैं यहां पे --

और इसके अंदर पीछे बहोत सारा खाने का पड़ा है।

रक्त के अवसर पर एक लड़की को सम्मानित किया जा रहा है।

और पंखे दिख रहे हैं हमें बहोत सारे यहां पे ऊपर लैंप लगे हुए हैं।

और यहां पे नीचे एक सीढ़ी लगाई हुई है जिसका कलर है येलो --

और हमें दो लाइट दिखाई दे रही है वहां पे एक कैमरा भी है।

और कुछ गाय अपना घास फूस खा रही है कुछ गाय नीचे बैठी भी है।

नीचे स्नेही होम्योपैथी स्टोर भी है उसके नंबर भी दिये हुए हैं।

और इधर नीचे कुछ लाल कलर का पड़ा हुआ है बाजू में लाल कलर की झंडी भी लगाई हुई है।

यहां पे हमें एक सीढ़ी दिखाई दे रही हैं।

उसके आगे हमें छोटी छोटी घर दिखाई दे रहे है।

चित्र के अंदर आगे खाली गार्डन दिख रहा है।

फिर उसके आगे एक बिल्डिंग है जिसमें दरवाजे हैं और खिड़की है।

जो गेट खोलने का काम करेगा और बहोत सारे लाइटिंग से डेकोरेट किया हुवा है।

यह एक ग्राउंड नजर आ रहा है जहां पे बहुत सारे लोग बैठे हैं।